सीड़ी बना हुआ जो काठे रंग का है और सीलिंग बनी हुई है ऊपर के साइड पेे एक पूल बना हुआ है। और ट ए ऊपर साइड पे छतरी लगाई गई है बगल में एक प्लेटफार्म है। और पटरी बीछी हुई है।

सामने जो छोटे-छोटे बच्चों को खेल रहे हैं। और उसने पीछे साइड पे कुछ बच्चे खड़े हैं और कुछ बच्चे बैठे हुए जो तीन लोग बैठे हुए हैं और सामने के साइड पे के दो आदमी दौड़ रहे हैं।

मैसेज पी.के. स्टेज बनाया गया है जो बहुत सारे फूल लगी हुई है लाइटे लगाई गई है काले रंग के ऊपर से छत बना हुआ है और परदे लगे हुए हैं बहुत सारी कुर्सी रखी गई सफेद रंग के पहले रंग की है।

पीछे साइड में बुरे और काले रंग की बड़ा सा पत्थर रखा गया है जो काले रंग का पत्थर है।

और काले रंग का दिखे हे सफेद नीला आसमान है बगल में पेड़ है जो हरी पट्टीया हैं और भूरे रंग के हैं।

तुमने एक लकड़ी के ऊपर शेर बैठा हुआ है जो टाइगर के नाम से जानते है। जो कतते रहेगे वह पीले रंग की आखी है।

और जाली लगाई गई जो काले रंग की है और खंभे खड़े हुए हैं और पीछे साइड भी पेड़- पौधे काफी बड़े-बड़े पेड़ है हरे रंग के पत्ते भूरी मिट्टी है।

और एक खिड़की लगी हुई है। जो वह कांच की बनाई गई है दरवाजे भी कांच करने की कुर्सी लाल रंग की है।